यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है और इस बैनर पर लिखा हुआ है ऐ .के. फिटनेस जिम ।

तीन चार पुरस्कार भी रखा हुआ है और उस जगह--

यहाँ पर नीचे में दो पोस्टर लगे हुए हैं।

औ यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है और उसके अगल-बगल में --

ये हाइट एक समान है और दो लोग आराम से खड़े है।

किया गया है । वैसे एक--

काम कर रहे है और गाडी का एक पहिया --

यह एक मंदिर है और इस मंदिर में पूरी तरह लाइटे लगी हुई है।